--और कुछ लड़किया डांस सिख रही हैं एक मेम उन्हें डांस सिखा रही है।

एक ग्राउंड है बहुत सारे खिलाडी दूर से दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग उस मैदान में झाड़ू भी लगा रहे हैं कुछ लोग उस मैदान में खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।